ये एक ढाबे के सामने का दृश्य है इसमें ढाबे के सामने एक रोड हैं जिसपे एक गाड़ी पार्क हुई हैं।

एक ब्लू कलर के टी शर्ट पहने हुए आदमी भी दिख रहा है।

अह लाइट पिंक कलर के टी शर्ट पहने हुए औरत दिखाई दे रहे हैं।

इसके चारों तरफ और भी छोटे छोटे पेड़ है अलग अलग टाइप्स के पेड़ है एक खुला मैदान है इसमें बच्चे लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं।

और यहां पे जो ग्रास है वो बहुत ही सुंदर है हरे कलर का।

और यह देखने में बहोत ही सुंदर सा लग रहा है।

ये एक हॉस्टल का का का अ का हॉस्टल हॉट हॉस्टल का --

अप अपना डांस का प्रस्तुति दे रहे हैं अलग अलग कलर के ड्रेसेस पहने हुए हैं।

ये एक कॉफी शॉप है जिसमें कॉफी कॉफी बनाया जा रहा है मशीन द्वारा और इसमें बहुत सारे चोको अलग अलग टाइप्स के अह--

काफी यहां पे एकत्रित हुए हैं यहां पूरा ग्रीनरी टाइप पेड़ पौधों से सजा हुआ--

यह एक कॉलेज का गेट है यह हरी शंकर शुक्ला मेमोरियल --

बनाया गया है यहाँ पे बहोत सारे गमले लगे हुए हरे कलर किया गया है गमले को --

जिनके हरे हरे पत्ते हैं लाल पीले--

बीच मे एक टेबल लगा हुआ है और साइड में पूरे कपड़े लगे हुए हैं।

और यहाँ पे कई सारे लोग है इनका आवभगत कर रहे है बाट रहे है खाना --

बहोत सारे लोग महिलाएं और पुरुष भी शामिल है बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और इसको पिंक कलर के डेकोरेट किया गया है।

लड़की ने एक स्कार्फ डाल रखा है येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ है।

जो ला लाल कलर के पट्टी में है।

इस पे खिड़कियां भी दिख रही है साइड में।

एक ग्राउंड की फोटो है इसमें चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

ये एक नदी की फोटो है ऊपर में एक सड़क जा रही है ब्रिज के ऊपर--

एक वॉटरफॉल का फोटो है।